यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

अलग अलग पर्दे और फूलों से डेकोरेट किया गया है।

उसके बाजू में बड़ी बड़ी बिल्डिंगे एक मंदिर और छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे है।